यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है उसके ऊपर एक औरत बनी है साड़ी पहन कर मराठी में कुछ लिखा है उसके नीचे।

ये इधर सायरन ब्लैक कलर का सूट टंगा है उसके पास पैकेटो में बहुत सारे कपड़े रखे हुए है ।

ये फोटो एक गैरेज का हैं जिसमें एक आदमी बैठा हुआ हैं मफलर डाल के नीला कलर का--